इस दृश्य के अंदर काफी ज्यादा बसें खड़ी है।

और एक टेबल भी है और कुछ साधन खड़े नजर आ रहे हैं।

और गाड़ी के पास आदमी भी खड़ा है।

ये इसपे काफी ज्यादा आदमी बैठे हैं।